त्रि की बगल में तार पड़े हुए हैं तार की बगल में और कुछ भी हो सकता है।

पर बहुत बड़ा इक है और ई बिल्डिंग है जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है बिल्डिंग के अंदर साइड में एक बिल्डिंग और है आपां बेरिया खा के आंवा देखां हां कित्ता मिले कित्ता नई मिले और --

यहाँ पर गेट है गेट की बगल में दो झूले हैं झूले जी बगल में दो छतरी है छतरी की बगल में दो बिल्डी --

यह एक चित्र है जो देखने में काफी सुन्दर है और देखने मेंकाफी गजब है तीन वीडियो और बनानी --